यहाँ पे काफी सारे गोभी के ऐसे फूल जैसे फूलस दिखाई दे रहे पत्ते --

यहाँ पे काफी सारे फूल दिखाई दे रहे हैं। बोरी में रखे हुए हैं। नीचे एक पल्ली पे पड़े हुए हैं और एक लड़की है जो फूल को बेच रही है। यहाँ पे खरीदार भी काफी सारे हैं।

जो कि पिंक पिंक सी दिखाई दे रही है। साइड में कोल घर जो है वो दिखाई दे रहा है।

पेड़ है वो भी दिखाई दे रहा है। इसका गेट खुला हुआ है।

अ दिखाई दे रहा है और इसकी जो गेट है ये लगा हुआ है।

टीशर्ट पिनी हुई है ब्लू जीन्स पिना हुआ है और कुछ लिखा हुआ भी है इस पोस्टर पे और इसके आगे दो तीन लोग बैठे हुए हैं।

माल बना रहे हैं और कुछ डाल रहे हैं छज्जे सा तो दो तीन जो हैं ये काम कर रहे हैं और --

आइड साइड कारपेंटर जो है ये बिछा हुआ है। चेयर भी यहाँ पे है